एक-दो ठोक पैर भी आया हैं इंसान का हैं अउ बोरा पिला में हैं अउ दो ठो हैं कोहड़ा अउ छोटा-छोटा घा--

देखिए यहाँ पे सूरज उग रहा है यहाँ पे बहुत सारा खंभा है बहुत अम तार गया है लगता है लाइट का कनेक्शन है यहाँ पे वो है वो का बोलते है बाउंड्री भी है स्कूल भी लग रहा है यहाँ पे इधर घर भी है।

यह देखिए यहाँ पर टाइल्स बिछाया हुआ ह रोड है यहाँ पे खम्बा है डिजाइन डिजाइन यहाँ कुर्सी है देखिए आप लोग आइये |

ये देखिए स्कूल है ये अउअववे दो ठो बाइक खड़ा है यहाँ पे और हरा हरा बहुत सारा यहाँ पे छोटा छोटा है।

नया जगह हैं देखिये यहाँ दरवाजा-वरवाजा अच्छा कठिन हैं बहुत अच्छा लग रहा हैं यहाँ बैठ कर के बैठेंगे तो अच्छा लगेगा घूमे फिरेंगे तो देखिये निचे भी बहुत--